यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ गेट है। गेट पे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है अजोध्या प्रसाद विश्वकर्मा निसी आई.टी.आई. ।

और उस हाल में पिलर भी है और फ दो दो तीन फैन हमे सा --

और इसके अंदर पार्लर में एक आदमी दिखाई दे रहा है. बाइक भी खड़ी है।